इस छवि में हमें किसी स्कूल का प्लेग्राउंड दिख रहा है।

के आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे भी है।

पेड़ के नीचे बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं।

इस चित्र में हमें एक ग्रीन कलर का डस्टबिन दिखाई दे रहा है।

एक व्यक्ति गोल पोस्ट के पास में खड़ा दिखाई दे रहा है।

सीलिंग पे बहुत सारे लाइटें भी जले हुए हैं।

दूर में हमें कुछ व्यक्ति व्यायाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक व्हाइट कलर का मारुति कार दिखाई दे रहा है।

दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है जे_के वृंदावन फिश मार्केट ।

उसके ठीक बगल में एक लाल कलर का स्कूटी पार्क किया हुआ है।

बोर्ड पर पेनिनसुला हाइट्स लिखा हुआ है।

एक महिला ने सर पे टोकरी लिया हुआ है जिस पे धूप भी जल रहा है।

इस चित्र पे एक टू व्हीलर वर्कशॉप दिखाया गया है।

आसपास में बहुत सारी हरियाली है।

स्टेज के ऊपर एक व्यक्ति माइक पे कुछ बोल रहे हैं।

इस रेलगाड़ी का रंग नीला है और उसमें इंडियन रेलवे लिखा हुआ है।

इस छवि में एक कार वर्कशॉप का एक हिस्सा दिखाया गया है।

ये वर्कशॉप टिन से बना हुआ है जिसका रंग नीला है।

पौधे के कई था टहनियां और पत्ते हमें यहां दिखाई दे रहे हैं।

पेर के नीचे कुछ लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग खड़े हैं।

इस समय में हमें कोई पार किया चिड़ियाघर का गेट दिखाई दे रहा है।

सीलिंग में कुछ लाइटें हमें दिख रहे हैं।

सीलिंग में बहुत सारे लाइट्स जल रहे हैं और कुछ पंखे भी लटके हुए।

प्रवेश द्वारा के ठीक ऊपर लाल रंग में रेड रिबन क्लब लिखा हुआ है।

इस छवि में कोई रिजॉर्ट या पार्क का एक हिस्सा दिखाया गया है।

पीछे स्टेज के पीछे नीला और लाल रंग से सजाया हुआ है।

पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग हैं और एक ऑटो भी दिख रहा है।

इस छवि पे कंक्रीट मिक्स करने वाला एक बड़ा सा ट्रक दिखाई दे रहा है।

इस सुपरमार्केट का नाम आशीर्वाद है जो वाइट बोर्ड में लाल अक्षर से लिखा हुआ है।

इस छवि में हमें एक कई मंजिला इमारत दिखाई दे रहा है।

इमारत के ठीक सामने बहुत सारे टू व्हीलर भी पार्क करके रखा हुआ है।

इस जिम में दो व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहे हैं।

रूम के अंदर बहुत सारे लाइट्स जल रहे हैं।

के ये उजाला दिख रहा है।